यहां पर धूप आता हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पे बहुत सारे गेट और दरवाजे नजर आ रहे हैं।

पर एक खाली ग्राउंड में दिखाई दे रहा है।

पर एक टंकी लगा हुआ नजर आ रहा है।

दीवाल पर कुछ मिल्कशेक का फोटो दिख रहा है।

यह एक दुकान का दृश्य है यहां पर हमें दो डीप रेफ्रिजरेटर रखा हुआ नजर आ रहा है जिसके ऊपर कुछ पेंटिंग बने हुए हैं।

पीछे एक काठ के जैसा में पेप्सी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ लकड़ी के बने हुए डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

ये पीछे लाल और पीले रंग की दीवाले दिख रही--

पीछे एक सुंदर गेट लगा हुआ है गेट को चारों तरफ से मालाओं से सजाया गया है।

यहां पर कुछ गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पे शीशा लगा हुआ नजर आ रहा--

वहां पर प्रवेश द्वार में काफी सारे लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जमीन पर हल्की घास होगी हुई दिख रही है और कुछ छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

एक युवक एक छोटा सा ड्रिल मशीन से कुछ खोदते हुए नजर आ रहा है।

यहां पर हमें हथौड़ी रखी हुई नजर आ रही है।

एक मंच का दृश्य है यहां पर हम एक सीढ़ी जिसके ऊपर पिंक रंग की प्लास्टिक बिछा हुआ दिख रहा है।

यहां पर बहोत सारे लाल रंग के चेयर लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक साइकिल का दुकान दिखाई दे रहा है यहां पर हम बहोत सारे साइकिल लगे हुए देख सकते हैं।

एक रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है यहां पर कुछ टेबल और कुछ चेयर लगे हुए दिख रहे हैं।

फर्श पर नीले रंग का बड़ा सा मैट बिछा गया है।

दीवाल पर बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर एक बड़ा सा मीटर दिखाई दे रहा है।